इस फोटो में मुझे दवाई की दुकान दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे खाने की ट्रे दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे मुझे कार दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे गाड़ियां दिखाई दे रही है।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

इस फोटो ने मुझे बहोत सारी टेबल कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे पंडाल लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

लोहे की जालियां दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो मे मुझे बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे चारों तरफ कटीली तारें दिखाई दे रही हैं।

फोटो में मुझे मोर दिखाई दे रहे हैं।

फोटो में मुझे मोर दिखाई दे रहा है।

फोटो मे मुझे घीसलपट्टी दिखाई दे रही है।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

फोटो में मुझे रोड दिखाई दे रही है।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

फोटो में मुझे बड़ा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

फोटो में मुझे भुट्टे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे गाय की मूर्ति दिखाई दे रही है।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

फोटो में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।